बहोत बड़ा सैलून दिखाई दे रहा है।

उसी के साथ हमें खुला आसमान दिख रहा है।

एक बाल्टी दिखाई दे रही है।

पेपर दिखाई दे रहा है रेड ब्लू और ऑरेंज कलर में।

वायर दिखाई दे रहे हैं।

एक हमें एक कार दिखाई दे रही है व्हाइट कलर में हमें दिख रही है।

और छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं हरे कलर में।

साथ ही में हमें एक यहाँ पर साइकिल दिखाई दे रही है बिगड़ी हुई।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है रेड कलर की।

उसी के साथ वो जो कार है वो हमें ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है।

एक हमें छोटा-सा पानी का तालाब-सा दिखाई दे रहा है।

छोटे ऊंचे खंम्बे यहां पर बने हुए हैं।

जहां पर डिजाइन बनी हुई है।

साइकिल की सीट हमें --

छोटे-छोटे गमले हमें दिखाई दे रहे हैं।

जहाँ पर काफी सारे गमले हमें दिखाई दे रहे हैं।

और जो फ्लोरिंग है वो टाइल्स लगी हुई है वहाँ प --

साथ ये पे हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक हमें यहाँ पर चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा छोटा-सा।